एवं इसमें दो गाड़ी और दिखाई दे रहे हैं ।

यह स्कूल हाईवे --

और जो की देखने में बहोत ही अच्छा खूबसूरत --

टीम अपने पैसा लगा कर के क्रिकेट खेल रही है चारों तरफ --

अच्छे तरह से रिपेयरिंग किया जाता है।